और एल.ई.डी भी लगा हुआ है बहुत सारा यहाँ लाइट --

उधर पे सामान उठाने वाला है पुरा।

और लड़का भी है मास्क पहना हुआ है।

ये वाला एक चीता है यहाँ रखा हुआ।

ऊपर में भी एक पोस्टर लगा हुआ है। सलून का नाम लिखा हुआ है।

और उधर सीढ़ी में और एक व्यक्ति है बैठा हुआ।

और सामने में भी एक व्यक्ति घूम रहा इधर उधर।

एक व्यक्ति है बैठा हुआ है यहाँ।

अ बहुत सारा लोग घुस रहा अभी।

बोहोत सारा समान रखा हुआ है यहाँ पे शेम्पू रखा हुआ है।

यहाँ कोई हॉल है बड़ा सा।

और बहुत ही अच्छे अच्छे कुर्सी भी लगे हुए हैं। जिसमें लाइट लगे हुए है पूरा।

वेक्ति है। मोबाइल में बात कर रहा है फ़ोन पर।

कुर्सी रखा हुआ है दो --

नीचे कोई रास्ता गुफा जैसा बना हुआ है।

साइड में बलून भी लगाया हुआ है अच्छा-अच्छा।